से अनाज निकाल जा रहा है और अनाज कट्टों मे भर रखा है सामने उसका भूसा पड़ा हुआ है और यहाँ टेक्टर बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं।

ये एक पार्क है और इस पार्क के अंदर काफी बच्चे और बच्चियां खेल रहे हैं और यहाँ पर झूला भी लग रहा है। वे बच्चे बहो --

ये गुफा एक बहुत ही प्यारी गुफा है।

और यह ऊपर को जो बनी हुई है। यह बहुत ही अच्छी एक इमारत और इसका जवाब नहीं है। सामने कुछ फुलवरिया रखी है जैसे लिली --

और ये हमारा सर बुलंद रहेगा और ये बच्चे में खड़े हैं जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए हैं और अपने तिरंगे को सलाम कर रहे --

ये एक अ बस डिपो है।

यहा पर एक चर्च है। ये और चर्च में एक औरत अपने कुछ कह रही है। माइक पर काफी लोग उसको बैठ कर सुन भी रहे है। कुछ लोग गेट के पास भी खड़े है।